दे रहे है एक पर्दा रखा हुआ दिखाई पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।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

काला दिखाई दे रहा है उसके चोट लाल दिखाई दे रही है पास में एक गाड़ी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे में आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है एक लोहे स्टूल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।